और यहां पर व्यक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और यहां पर --

जो कि काफी पुरानो सो दिखाई दे र --

पीछे बड़े-बड़े से पेड़ दिखाई दे रए एं ।

पिक कलर को टाइल्स लग रहा है मार्वल --

कई साइकिले भी हेगी मोटर साइकिल भी हेगी ।

और एक और व्यक्ति दिखाई दे र --

कई व्यक्ति और कई अधिक अधिक सामान नजर आ राउ लउ --

और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगो हुवो है।

सभी छात्र सब दीवाल के पास में खड़े हुए हैं।

स्कूटी अलग-अलग रंग की हैं जैसे कि काले ला सफेद कथई।

और जिनमें कई व्यक्ति एक्सरसाईज करते हुए नजर आ रहे।

लाइटें जल रही हैं। ए_सी भी दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की।

और जहाँ पे एक सरस्वती मईया के पोस्टर लगो हय।

और यहाँ पर और भी सब --

एक स्टेचू दिखा द दिखा रहा है जाने लाल कलर कि टी-शर्ट पहन रखी होगी --

और अंदर कई बड़े-बड़े हरे-हरे कलर के पेड़ लगे हुए हैं --